दिखाय दे रहा है दिल सा फ्लावर अर्तिफिस्यल लगे हुए है और इसके आगे एक तस्वीर खिची गयी है दो --

जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है जोकि साइड पोस्टर लगी हुए हैं। मिथ्या नाथ ग्लोबल स्कूल और स्कूल का रंग पिंक कलर का है और ऊपर --

के तार दिख रही हैं और गार्डन भी एकदम बोहोत खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हैं।